यहां पर हमे एक मोबाइल की शॉप दिख रही है जिसमें की कुछ बॉक्स रखे हुए हैं।

यहां पर हमें एक हाथी दिखाई दे रहा है हाथी के ऊपर एक व्यक्ती बैठा हुआ है साथ में यहां पर हमें --

बड़े पत्थर और यहाँ पर ग्रीन घास भीं हमें दिखाई दे रहीं हैं और साथ में बड़ा सा गड्ढा--

दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर यहां पर पानी गिर रहा है सा--

सामने कुछ ऑटो है और को साथ में ही एक बस --

इस फोटो में हमें एक पैट्रोल पंप दिख रहा है।

रात मे रेड कलर और ग्रीन कलर के पिल्लो ब्लैक कलर का पिल्लो --

पलंग दिख रहा है साथ में एक टेबल दिख रहा है जो ब्राउन कलर का नजर आ--

यहां पर पिलर्स दिख रहे हैं पिलर के साथ कुछ वायर --

इस फोटो में हमें पीछे एक घर दिख रहा है।

सब कोई पिछे कुछ कपड़ों की दुकानें और स--

छे पेड़ पौधे हमें यहां पर ग्रीन कलर के भी दिखाई दे रही है आसमान ब्लू कलर का है और कुछ लोग यहां पर झूले के साथ भी झूलने लगे हैं कुछ शायद बच्चे --

शो रूम के अंदर कुछ लोग हैं कुछ बॉक्सेस पड़े हुए हैं और साथ में ही यहाँ पर --

साथ में ही एक बेंचेज लगे हुए हैं जो रेड कलर के--

रात मे ये हमे यहां पर पीछे कुछ मूड और किचन मे काम करता हुआ एक रेड टोपी वाला ग्रीन टोपी--

इस फोटो में मैं बड़ा सा मैदान दिख रहा हैं।

व्हाइट कलर का बड़ा फ्लोर ब्राउन कलर का खिड़की दिख रहा है साम --

यहां पर ब्लैक कलर व्हाइट कलर की कुछ चीजें भी पड़ी हुई है।